सामी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

ऊपर ली ओर बलब जल रहे हैं।

लड़के के कान में वाइट कलर की लीड लगी हुई है।

एक मशीन धड़कन नापने की रखी हुई है।

दीवार में एक बोर्ड लगा हुआ है बिजली का।

लकड़ी के कुवाड़ के कोने पर सफेद कागज लगा--

व्यक्ति इधर किनारे पर बैठे हुए हैं तंबू में।

ऊपर झालर जली हुई है।

दो मोटरसाइकिल है जिन पर हेलमेट धरे हैं।

एक लोहे की जे_सी_बी है।

बहुत सारी बोले धरी हुई है।

लोहे का जाल लगा हुआ है।

लोहे का पहिया गोल रखा हुआ है।

एक चेयर के सामी टेबल धरी हुई है।

दीवार के बीच में एक किवाड़ लगा हुआ है।

फर्श पर एक लूटरी रखी हुई है।

व्हाइट कलर की दीवार दिख रही है।

चेयर पर एक आदमी बैठा है।

मेज पर तीन वाटर थर्मस रखे हुए है।

रेड व ग्रीन चटाई बिछी हुईं है।

दो पेड़ खड़े हुए है लंबे लंबे--

हॉस्पिटल के ऊपर ली साइड में दो ग्रिल लगी हुई है लोहे की।

नीचे ब्लैक डंबल धरे हुए हैं।

धूप लग रही है धरती पर।

इसलिए और पर्दे लगे हुए हैं।

एक व्यक्ति के सीर पर टोपा है।

एक कुर्सी पर सिर धोने का तस्ला रखा हुआ है।

एक कुर्सी छोटी व्हाइट कलर की रखी हुई है।

ऊपर ली छत टीन की है।

एक गाड़ी के अगली स्टील का सीसा लगा हुआ है।

दीवार पर एक बोतल धारी हुई है।

इंडियन ऑयल बिजली से जला हुआ दिख रहा है।

नीचे ईंट बिछी हुई है।

कोने में एक कैमरा लगा हुआ है।

नीचे लोहे का गेट है छोटा सा।

दीवार पर रेड रंग हो रहा है हड़का हड़का --

टेंपू के अंदर व्यक्ति है।